यहां पे सामने में दो टेबल रखी हुई है उसपे दो तीन गिलासे और एक गुलदस्ता फूल रखा है गया है और एक जग भी रखा गया है।

पिलर खड़े हैं और वहां पे बहुत सारे लोहे से घेरावा किया गया है पीछे में एक बिल्डिंग --

ऊपर में लाइट लगाई गई है पीछे में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और राइट साइड में एक वाइट ट्रक खड़ा है।

यहां पे एक ब्लैक कलर का प्लेट है।

बहुत सारे जिम करने वाले बंडल रखे गए है।

यहां पे बहुत सारी लड़कियां योगा कर रही हैं।

पीछे में एक बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है जिसपे कृति योगा लिखा हुआ है।

और पीछे में बाउंड्री पे तार के घेरावा किया गया है।

और लेफ्ट साइड में फर्श पे ईंट द्वारा बनाया गया है।